चाँदी वाले सामान दिख रहे है मोर की डिज़ाइन बनी हुई दिख रही तस्वीरें दिख रही पीले कलर में रखी हुई दिख रही --

जल कल्याण का एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। पेड़-पौधे दिख रहे हैं। मकान वगैरह दिख रहे हैं। रेड कलर दिख रहा है। पीले कलर दिख--

और सारी लड़किया दिख रही है। योगा करते हुए दिख रही है। व्हाइट पे दिख रही है। पंखे दिख रहे हैं। ए.सी वगेरा दिख रही है। ब्लैक कलर की पर्दे दिख रहे हैं। जेंट्स भी दिख रहे हैं।

वो दिख रहा है बैट दिख रहे हाथो में कुछ बैठे कुछ खड़े हुए दिख रहे है बाउंड्री बनी दिख रही है नेट की बादल में कलर दिख रहे है पिंक कलर पीला कलर --

कार खड़ी दिख रही है। ग्रीन कलर दिख रहा है। चट्टानें दिख रही हैं। टाइप का दिख रहा है। वाइट कलर की बादल दिख रहा। पिंक कलर दिख रहा है बाद में --

दिख रहा है ऑरेंज कलर दिख रहा है सीटों पे गोंद रखी दिख रही सीट दिख रही है बहुत सारा सामान दिख रहा है कॉपी किताबे दिख रही है लड़की दिख रही एक लड़की दिख --